यहां पर दो-तीन लोग खड़े हुए हैं यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर छांव के लिए बहुत अच्छे से शेड बनाकर रखा गया है।

यह एक लॉन्ड्री की तस्वीर है जहाँ पर एक लॉन्ड्री का गेट लगा हुआ है। यहाँ पर लॉन्ड्री लैब करके यह दुकान का नाम है।